और पेड़ भी नजर आ रहे है और इसमे एक बोर्ड भी टंगा हुवा है उसके ऊपर ब्लैक डाइमंड मोटर्स भी लिखा हुआ है और गाड़ी भी खड़ी हुई है।

ये एक और इस चित्र में बहुत सारी बहुत सारी --

और एक दूका और बहुत सारे लोग भी खड़े हुए है जो आपस मे एक दूसरे से बातें कर रहे है।

जो की सफ़ेद कलर की साफी पहना हुआ है और मटमैला कलर की शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर की जीन्स भी है और इन सांचो में हलकी-हलकी कलर कला रंग भी है।

एक डलियां में फूल भी रखे हुए है तो एक बाल्टी में बुके भी रखा हुआ है उसमे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम प्रकाश पुष्प भंडार है जो की इसका प्रकाश माली भी उसका नाम लिखा --